इसमें बहुत सारे पेड़-पौधे दिख रहे है बड़ा-बड़ा पेड़ है।

हरा हरा हरा सब दिख रहा है | एक आदमी है नाव पे खड़ा है टोपी पहना है |

फूल है मकान दिख रहा है आसमान भी दिख रहा है।